और यहां पर बहुत सारी बकेट है अंदर।

और रेस्टोरेंट के अंदर लाइटें लगी हैं।

जो जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं और --

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को दिखाया गया है।

के दूसरी तरफ आई_डी_एफ_सी फर्स्ट बैंक का ए_टी_एम मशीन है।

और इस बोर्ड में रेड कलर लगा हुआ है।

यहां पर एक आदमी को दिखाया हुआ है जो मछलियों को बेच रहा है।

जो काउंटर पे बैठा हुआ है और इसके काउंटर पे--

और ये अपना चारा चर रही है।

और इसमें येलो कलर का और रेड कलर का पेंट हुआ है।

बोर्ड पे जस्ट बेक्ड नाम का जो बोर्ड है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को दिखाया गया है।

और बिल्डिंग इस बड़ी बिल्डिंग के साइड में एक छोटी बिल्डिंग है जो व्हाइट कलर की है।

पेड़ के राइट साइड में एक पार्किंग है।

और यहाँ पर तीन लोगों को दिखाया गया है जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं।

यहां पर एक अं बिल्डिंग को दिखाया गया है जिसके आसपास--

यहाँ पर एक रेस्टोरेंट को दिखाया है।

रोड के साइड गाड़ियां पार्क हुई हैं यहां पर --

यहाँ पर एक जिम को दिखाया गया है जहाँ पर अंदर जिम की मशीनें हैं।

लाल कलर के कुछ वाइट कलर के--

और फैन के साइड में स्कैनर लगा हुआ है।

और इनको जाली के अंदर कैद करके रखा हुआ है।

जहाँ जो बहोत बड़ी बिल्डिंग हैं और--

यहां पर एक पार्किंग को दिखाया गया है एक पार्क को दिखाया है जहां पर एक --

आगे की ओर चादरा है और जो फोन चला रहा है।

यहां पर कुछ गमले को दिखाया गया है।

व्हाइट शर्ट और जींस की पैंट लेकर खड़ा हुआ है।

यहाँ पर एक कमरे के अंदर कुछ लोगों को दिखाया गया है।

जो अपना बीना बजा रहे हैं कुछ ढोलक बजा रहे हैं।

इशमें हरे भरे बड़े बड़े पेड़ों को दिखाया गया है।

खड़ा हुआ है सिस्टम के पास खड़ा हुआ है।

और इसने पीठ में बैग लिया हुआ है।

यहाँ पर एक आदमी को दिखाया हुआ है।

जो कोट लेकर खड़ा हुआ है और--

जगह को दिखाया है यहां पर एक तालाब है।

और इनके साइड में आल्टो काड़ी लगी हुई हैं।